लेडीज वगैरा है उसके संग दूसरे जो काउंटर लगा हुआ है काउंटर ने उस पार--

रनिंग मशीन है। रनिंग साइकल है।